पर एक दुकाननन है जहां पर बहुत सारे कप्बोर्ड रखे हुए हैं औररर यहां पर बहुत सारे कप्बर्डो में समान रखा हुआ है।